यह एक बहुत बड़ी सी जगह है जिसमे एक छोटी सी लेक बनी हुई है जिसमे लोग अपने घरेलू काम कर रहे है बहुत सारे पत्थर है यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है यहाँ पे।